जैसा की आप देख सकते यहाँ पर एक बहुत बड़ा टेंट लगा हुआ है जिसमे बहुत सारी लेडीज और जेंट्स अंदर की तरफ खड़े हुए है ये टेंट --

सामने की तरफ एक जंगल भी दिखाई दे रहा है जिसमे की बहुत बड़े बड़े और घने--

पिलर बने हुए है और यहाँ पर बहोत सारी चेयर एक के ऊपर एक रखी हुई हैं इस हॉल में वाइट और ब्लू कलर किया गया है।

जैसा की आप देख सकते है यहाँ पर एक बहुत बड़ा जंगल है इस जंगल में घने और बहुत ज्यादा पेड़ लगे हुए है।

और इस ग्राउंड में हम्म हम्म पुरे तरफ़ चारो तरफबोहोत सारे आदमी खड़े हुए है और एक बीच में एक--

और यह आदमी एक बाल्टी रखे हुई है इस मारुती कार का गेट खुला हुआ है ।

हरी घास लगी हुई है और सामने की तरफ बहुत बड़े-बड़े पेड़ लगे हुए है और इसे हम्म ग्राउंड में--

बहुत बड़े-बड़े पेड़ भी लगे हुए है और इस ग्राउंड में जैसा की आपलोग देख सकते है बहुत सारी मारुती कारे भी खड़ी हुई है।

जैसा की आपलोग देख सकते हैं यहाँ पर एक स्टेज बना हुआ है जो की ब्लू कलर के कर्टेन से बना हुआ है इस स्टेज पर --